यहां पे एक दीवाल भी है जिसका कलर कॉफी है।

यहां पे बहोत सारी सब्जी रखी हुई है।

उनके पास में दो मिट्टी भी रखी है।

और एक लाल कलर की बाल्टी भी रखी हुई है।

और नीचे कहीं कहीं घास भी लगी हुई है।

और सामने एक बड़ा सा कॉलेज बना हुआ है और उसके पीछे पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये एक बेड है और इसपे एक सोफा रखा हुआ है।

बैटरी के पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।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

ये एक बेड है और इसके दो तकिये रखे हुए हैं।

और बराबर में कुछ गद्दे भी रखे हुए हैं।

दवाई रखी हुई है और उन पे शीशे भी लगे हुए हैं।

और इसके पीछे धुआं भी दिखाई दे रहा है और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये एक मेज पर बोतल रखी हुई है।

और कुछ लाइट भी लगी हुई है।

गेट के पास में तीन बाइक भी खड़ी हुई है।

कुछ बोर्ड लगे हैं और उन पर कुछ लिखा हुआ है।

इसके पास में एक आदमी खड़ा है और एक बैठा हुआ है।

यहां पे बहुत सारी गोभी उग रही है।

एक आदमी खड़ा है और तीन आदमी के चेहरे पे बल्ब लगा हुआ है।

और यहां पे कुछ आदमी भी खड़े हैं।

और यहां पे एक आदमी आ रहा है।